वहाँ पे एक आदमी बाइक पे बैठ के बातें भी कर रहे हैं और कुछ ऑटो भी देखने को नजर आ रहे हैं।

और वहाँ पे एक बोर्ड लगा है प्रोफेशनल सैलून का और ओ लोग रोड की तरफ ही देख रहे हैं।

सामने में एक रोड देखने को मिल रही है और ओ बिल्ड बगल में बिल्डिंग है।

सामने में रोड देखने को नजर आ रही है और रोड के पीछे एक दुकान है।

और दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा पेर है वो पेर बहुत ही हड़ा -भड़ा है।

वहाँ पे दो मिक्सर और कुछ बॉटल्स भी नजर आ रहे हैं और उस मिक्सर बॉटल्स के कलर लाल कलर की हैं।

सामने में एक रोड देखने को मिल रही हैं और रोड और रोड के बाजु में दो स्कूटी भी देखने को मिल रही हैं।